पहनी हुई है एक औरत है जिसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है एक लड़का जा रहा है जिसने ग्रे कलर का टि-शर्ट और ग्रे कलर की टोपी पहनी हुई है।

एक आंटी ने रेड कलर की साड़ी पहनी है और एक बच्चे ने गुलाबी कलर की टोपी पहनी हुई है।

लाल कलर की कुरसी है एक आदमी पेड़ के बीच खड़ा है उसके पीछे गुलाबी और नीले कलर का पर्दा है।

आदमी जमीन पे बेठा हुआ है जिसने सर पे गूलाबी कलर का तोलिया लपेटा हुआ है उसके सामने येल्लो कलर के डब्बे में मच्छीया है।

व्हाइट कलर के कुछ सोफ़े है कुछ कुर्सीया है एक झुमर है कुछ आदमी है ऊपर सेलिंग पे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है नीचे जो चटाई है उसकी कलर रेड और गोल्डन है।

नीचे एक चटाई है जिसपे लाल और येल्लो कलर के गूलब है साइड मे दो दादा जी बेटे हुए है एक दादाजी के हात मे माईक है।

नीचे कुछ पथर खड़े हुए है साइड मे हरे कलर की घास है उपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है एक छोटा दरवाजा है।

उसने हात में फोन लिया हुआ है साइड में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। सामने टेबल पे बहुत सारे पेन्स रखे हुई है।